झांसी राशिकाल एवं भाग्यशाल भब जैनभवन जहाँ पे लोग आ कर यहाँ पे बिश्राम भी करते है बाहर से आकार और यहाँ पे बहुत सारे बाहर से आए हुए लोगों को घर मिलता है।

इस में इलेक्ट्रिक करंट भी बनाया गया है जिससे वाटर प्रडूस होता है और यहाँ पे नीचे से लाइट शावर किया गया है तो देखने में बहुत अच्छे लगते है ।

पोटेटो ब्रिनजल सभी कोबी ये सब सब्जी मिलती है ।]

पानी हो गए फ्रुटीस वगेरा हो गया है आपके लिए पान हो गया है हेयर कलर्स हो गए कोलगेट हो गए पेस्ट हो गए बेबीज के लिए उनके लिए पाम्पेर्स पैन्ट्स हो गए ।

बहुत बड़ा फी ये फील्ड है वकारों की जहाँ पे लोग अपने प्लेयर्स को देखते है। खेलते हुवे और विकेट से सभी अवेलेबल होते है रो--

सामने वॉकिंग भी करते है एक्सर्साइज़ भी करते है क्रिकेट बैडमिंटन सभी चीज--

यहाँ पे कपल्स की प्रिवेडिंग भी होती है। और यहाँ पे एन्गैज्मन्ट भी होती है और यहाँ का फूड भी बहुत डिलिशस बना होता है ।

पे-- लिफ्ट वागरह भी लगी होती है और यहा बहुत बड़ी प्लेटफ़ॉर्म है ये बहुत सुंदर है और अच्छी है।

ये एक बहोत बड़ा ही फील्ड है गांधी मैदान के जैसा जहां पर लोग सुबह शाम वॉकिंग करने आते है।